बस खड़ी है एक ऑटो है दो अंकल है दोनों दोनों अंकल के बैग में हा बैग है।

फोटो है बाजू में बंग्लो है बस का नाम बस स्लीपर कोच वाली है टू इंटू टू ऐ_सी कुंडवा नाम की है।